ये पिक्चर में मुझे कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं।

ये एक दुकान की फोटो है।

एक अंकल है जो मैनेजर है उस होटल का।

एक बिसलरी की पानी की बोटल है दो पानी की बोटल है बहुत सारी चम्मचें लगी हैं ।

ये तो मुझे कोई एस_बी_आई बैंक का शोरूम लग रहा है ।